चीत्र में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है पेट्रोल पंप --

और दो बेड रखे हुए हैं।

चित्र में हमें एक बिल्डिंग दिखाई गई है।

चित्र में हमें एक गेट लगा हुआ दिख रहा है और दीवाल प--

टेबल और कुर्सियां बहुत सारी--

शिवजी की मूर्ति भी रखी हुई है और मालों से--

की गई है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

उसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक ।

खड़ा हुआ है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगी--

साइकिलिंग वाली मशीन भी रखी--

बहुत सारी नैपकिन और छोटे छोटे ग्लास भी रखे--

इस चित्र में हमें एक जगह पर बहुत सारे टिन रखी हुई दिख रही--

फर्श पर बहुत सारी लाइटें लगी--